इस इमेज में हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में घास उगी हुई दिखाई दे रही है और कुछ आदमी और बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस में ऑरेंज सफेद और पीले रंग के गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बेंच दिखाई दे रही है जो सिल्वर रंग की है और एक चेयर भी दिख रही है।